यह एक जिम है यहां पर एक्सरसाइज की बहोत सारी मशीन हैं लाइन --

ये ये द हेजल नीट फैक्ट्री है।

यहां बाहर एक खंबा भी लगा हुआ हैं और बाहर एक स्विफ्ट कार भी खड़ी हुई हैं।

यहां पर एक नीली कलर की एक्टिवा स्कूटी भी खड़ी हुई है।

यहां पर हर प्रकार की दवाइयां टैबलेट सिरप भी रखे हुए हैं।

और एक टेब डेस्क रखा हुआ है।

यह यह लखनऊ का एक पार्क है जिसका नाम है अंबेडकर।

और यहां पर इस गुमटी के अंदर कई सारे टायर्स रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे इंजन ऑयल के डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक फ्रूट शॉप है यहां पर कई सारे फ्रूट टोकरी में रखे हुए हैं और पेटीएम का स्कैनर भी रखा हुआ है।

और यहां पर केले भी रखे हुए हैं यहां--

यहां पर ये यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है।

वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को गर्दन पकड़ के झुकाए है ये लोग मजाक मस्ती कर रहे --

वहां पर एक आदमी खड़े होकर टिकट दे रहा कि ले रहा है।

यहां एक आदमी बैठा है कंप्यूटर से जो टिकट निकाल कर इस आदमी को देगा।

यहां पर ये लाल कलर का है और यहां एक कपड़ा भी रखा हुआ है नीले कलर का।

यहां पर कई सारे फूल हैं और यहां पर टेंट लगा हुआ--

यहां पर कैटरिंग लगी है।

ऊपर देखेंगे तो छत के ऊपर दो छतरियां लगी हुई हैं।

एक आदमी माइक में कुछ बोलने जा रहा

यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसको सुनने के लिए और यहां पर ब बहुत सारी सजावट भी है।

घास भी दिखाई दे रही।

यहां पर यह एक कोई छोटा सा इवेंट --

साजे रोड से संतरे भी रखे हुए हैं।

और कई सारे घास भी लगे हुए हैं।

काली कलर की गाय है जिसका मुंह बंधा हुआ है और गर्दन में घंटी टंगी हुई है यहां--

यहां पर एक आदमी और एक औरत बाहर खड़े हुए--

कई सारी दुकाने हैं और यहां पर नाऊ ओपन एक्स सिटी मॉल लिखा हुआ--

यहां पर एक आदमी खड़ा है जो सर पर गमछा बांधे हुए है और एक आदमी पेट पर बांधे हुए है।

यहां पर परदे भी कई सारी पर्दे लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ पंखा लगा--

यहाँ पर आइसक्रीम मिलती है।

यहां पर पीले ब्लैक लाल बैलून लगे हुए--